इसके कारण आसमान काफी पीला आरेंज हो गया है कुछ नीला भी आसमान दिख रहा है।

दो ब्लू कलर का है अंदर की तरफ जाने के लिए लोहे का कांच का गेट बना है अंदर की तरफ भी--

पीछे वाइट ऑरेंज कलर का एक पोस्टर लगा है। एक व्हाइट बोर्ड भी रखा हुआ--

व्हाइट रेड ग्रीन फ्लावर लगे हुए हैं व्हाइट पर्दे हैं ऊपर की तरफ रेड व्हाइट चेक्स के पर्दे लगे हैं।

यहां पर एक जिम है जिम की दीवारें ऑरेंज और ग्रीन कलर की--

और पीछे की तरफ काफी यहां पर छोटे छोटे हिरन चर रहे हैं जो--

रोल करके प्लास्टिक के रेड कलर के पिंन्स लगाए गए हैं कुछ हेयर खुले हुए--

यहां पर झरना नीचे की तरफ बेह रहा है पहाड़ों से पहाड़ों पर ब्लैक पत्थर है।

यहां पर एक लाइट येलो और लाइट ग्रीन कलर की बिल्डिंग बनी हुईं है जिसके चारो तरफ बाउंड्री --

वाइट कलर के भी कुछ घर बने हैं जिनके गेट लोहे के ब्राउन कलर के हैं।

आस पास बहोत से लोग खड़े हुए हैं पीछे की तरफ टीन सेट लगा है और लोगों की बहोत ज्यादा--

यहां पर एक घर बना है जो येलो और रेड कलर का है इसमें दो ब्लू कलर की शटर लगी है।

एक ओपन है एक बंद है आसपास बहोत से पोस्टर लगे हैं सामने लोहे का टीन शेड लगा है।